ऐठन ट्रैक्टर के चक्का है धेल कालिया कलर के बहुत ही बड़का बड़का।

ऐठ ऐइ के बगल में एगो घर हाई जेठन आदमी सब हाई बर्षा होय छे मोटर साइकिल सब लागल हाई।